ऐसे लगथे कि चट्टान ले निकलथे कहु ओष्ने निकल के चटान बने आदमी मन हावे एमे--

एहा डिजाइन हे अउ डिजाइन ह सैलून में बने और एकझन लड़का है एला कर्पा है ।

अती बड़ बड़ बिलडिंग हे जेमे झालर लगे लगे हे बाहर मा अति कंगाड़ी मन हावे बन एकझन आदमी आये हे में शादी वा हो --